ये निर्माण अ सदन है इसमें फोर व्हीलर बाहर खड़ी है।

येलो कलर की बस खड़ी हुई है और बहोत सारे आस पास पेड़ हैं।

और क्रिस्चनों का चर्ज है जिसमें बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं बाहर चर्च का प्लस लगा हुआ है।

और कुछ अ समान पड़ा है जैसे कि एक थैला है कुछ लकड़ी का समान है।

अ सोफा रखा हुआ है एक ग-गमला रखा हुआ है लाइटिंग लगी हुई है व्हाइट और --